जहां चा पांच लोग फोटो सेल्फी ले रहे हैं।

जो है ऑरेंज कलर ड्रेस पहनी है और व्हाइट --

और टेबल पर लोग बैठे हुए हैं।

जिस पर लिखा है एयरटेल फोर जी ।

और एक आदमी बैठा इंतजार कर रहा है।

बीच में फूलों के पौधे लगे हैं जहां कुछ लाल रंग का फूल भी दिख रहा है।